यह एक बहोत बड़ा दुकान है।

और एक बोर्ड भी लगाया हुआ है।

ट्रक का कलर ईट कलर की है।

मकान के बगल में एक पोल है।

इस मकान का डिजाइनिंग बहोत अच्छा से बनाया गया है।

सामने सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं।

अगल बगल बहोत हरा भरा पेड़ है।